c c ++ में arithmetic arithmetic operators पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्नलिखित के बारे में सीखेंगे
arithmetic operators जैसे कि + addition: जैसे a + b
subtraction : जैसे ab
/ division : जैसे a/b
* multiplication: जैसे a * b
% modulus: जैसे a% b
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ operating system के रूप में ubuntu 1110
ubuntu में gcc और g ++ compiler version 461
अब मैं एक c program की मदद से इन arithmetic operations के उपयोग को समझाऊँगा
मैंने पहले ही program लिख लिया है
अतः मैं editor खोलूँगा और code समझाऊँगा
यहाँ arithmetic operators के लिए c program दिया गया है
पहले दो statements variables घोषित और परिभाषित किए गए हैं
अगले दो statements में
a की value 5 निर्धारित की गयी है
b की value 2 निर्धारित की गयी है
अब देखते हैं कि एडिशन operator कैसे काम करता है
c a और b का योग है
यह printf statement screen पर a और b का योग प्रदर्शित करता है
यहाँ % 2f दशमलव बिंदु के बाद दो अंकों की स्पष्टता दर्शाता है
अगले statement में c a और b का गुणनफल है
यह printf statement screen पर a और b के गुणनफल को प्रदर्शित करता है
देखते हैं कि ये दोनों operators कैसे काम करते हैं
हम निम्न लाइनों के लिए comment करेंगे
type करें/*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
save पर click करें
file को c extension के साथ सेव करें
मैंने अपनी file arithmetic c नाम से सेव की है
एक साथ ctrl alt और t keys दबाकर terminal window खोलें
code को कंपाइल करें terminal पर निम्न type करें
gcc space arithmetic dot c space minus o space arith
enter दबाएँ
code को एक्जीक्यूट करने के लिए/arithटाइप करें
enter दबाएँ
output screen पर प्रदर्शित होता है
यह दर्शाता है कि 5 और 2 का योग 700 है और
5 और 2 का गुणनफल 1000 है
अब आपको स्वयं सब्ट्रैक्शन operator का अभ्यास करना चाहिए
एडिशन operator को सब्ट्रैक्शन operator से बदल कर देखें
आपको परिणाम 3 प्राप्त होना चाहिए
program और statements के अंतिम समूह पर वापस आते हैं
अब मैं division के लिए code समझाऊंगा
यहाँ से मल्टी लाइन comments हटाएं
इन statements में c a by b integer division की value संचित करता है
कृपया ध्यान दें कि integer division में भिन्नात्मक भाग को छोड़ दिया जाता है
printf statement division output को screen पर प्रदर्शित करता है
इस statement में हम real division कर रहे हैं
यहाँ एक ऑपरेंड को floatके रूप में cast किया जाता है
हमने cast variable a type किया है
अब a एक एकलoperation के लिए float variable के रूप में कार्य करेगा
printf statement real division का output screen पर प्रदर्शित करता है
return 0 type करें और ending curly bracket बंद करें
save पर click करें
कंपाइल करने के लिए terminal पर वापस आएं और code को एक्जीक्यूट करें
कंपाइल करने के लिए टाइप करें gcc space arithmetic dot c minus o space arith enter दबाएँ
code को एक्जीक्यूट करने के लिए type करें/arith और enter दबाएँ
output screen पर प्रदर्शित होता है
हमारे पास एडिशन और multiplication operators के पिछले outputs हैं
हमारे पास 5 by 2 का integer division 2 है
हम देख सकते हैं कि integer division में भिन्नात्मक भाग को छोड़ दिया जाता है
फिर हमारे पास 5 by 2 का real division 25 है
real division में अपेक्षित परिणाम प्राप्त होते हैं
हमने ये परिणाम प्राप्त करने के लिए typecasting का उपयोग किया है
अब मान लें कि मैं c ++ में वही program लिखना चाहता हूँ
देखते हैं कि क्या मैं c ++ में भी वही code उपयोग कर सकता हूँ
पता लगाते हैं
editor पर वापस जाएँ
यहाँ एक c ++ code है
ध्यान दें कि header c file header से अलग है
यहाँ namespace का भी उपयोग किया गया है
यह भी ध्यान दें कि c ++ में output statement cout है
इसलिए इन भिन्नताओं के अतिरिक्त दोनों codes काफी समान हैं
save पर click करें
सुनिश्चित करें कि फाइल cpp एक्सटेंशन के साथ सेव हो गई है
मैंने अपनी file को arithmetic cpp नाम से सेव किया है
code को एक्जीक्यूट करें और देखें कि हमें क्या परिणाम प्राप्त होते हैं
terminal खोलें और type करें g ++ space arithmetic dot cpp space minus o arith enter दबाएँ
code को एक्जीक्यूट करने के लिए type करें/arith और enter दबाएँ
यहाँ output प्रदर्शित होता है
अतः हम देखते हैं कि परिणाम c program के समान हैं
एकमात्र अंतर outputs की परिशुद्धता में है
अब इस tutorial को सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने सीखा कि arithmetic operators का उपयोग कैसे करें
एक नियतकार्य के रूप में:
modulus modulus operator के उपयोग को बताने के लिए एक program लिखें
कृपया ध्यान दें कि modulus operator से division का शेषफल प्राप्त होता है जैसे c = a % b;
आपको परिणाम 1 प्राप्त होना चाहिए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
यदि आपके पास अच्छी bandwidth नहीं है तो आप इसे download करके भी देख सकते हैं
spoken tutorial project team spoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाओं का आयोजन करती है
उन्हें प्रमाणपत्र भी देते हैं जो online test pass करते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact at spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
इस mission पर अधिक जानकारी यहां उपलब्ध है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
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ